ये एक बड़े से हॉल में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है बड़ा सा ये --

नीचे बाहर घर के बाहर पर्स लगा हुआ है।

यह गेट दिख रहा है। रोड से अंदर एक गोल गेट दिखाई दे रहा है बना हुआ।

लड़की खड़ी हुई है पास में। बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

वाइट कपड़ा रखे हुए है पन्नी में कुछ कलर वाले कपड़े हुए कपड़े रखे हुए दिखाई --

एक मैंदान दिखाई दे रहा है हरा भरा सा नीचे घांस लगी हुई है।

पास में बस खड़ी हुई है स्कूल की पीले कलर की।

एक ठेले पर ये फ्रुट्स रखे हुए हैं। पपीता और अंगूर रखे हुए दिख रहे हैं एक ठेले पर।

पास में ऑटो दिखाई दे रहा है।

ये रोड दिख रहा है। डबल रोड है।

लोहे से टीन शैड से बना हुआ है ये।

कुछ लेबर खड़ी हुई हैं यहाँ। कुछ लोग खड़ा हुए।

हन् केबिन में तिरंगा लगा हुआ है झंडा।

बॉक्स रखी हुई है। कंप्यूटर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं हर केबिन में।

बाउंड्री दिख रही है रेड कलर से पुत्ती हुई बाउंड्री के बाहर छोटे-छोटे पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

सामने भी बड़ी सी पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड के सामने।

सामने भी कुछ खंबे से दिखाई दे रहे हैं। सफेद कुत्ते --

लोग सब बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आस-पास बड़े-बड़े मकान दिखाई दे रहे हैं बने हुए।

बैठे हुए सोफे लगे हुए हैं। इसपे दो लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।